टेबल के उपर ग्लास प्लेट सजे हुए हैं।

मैकेनिक कुछ काम कर रहा है उसी कार के नीचे के हिस्से में।

और साइड में छोटा-छोटा पौधा भी है।

और साइड में लेफ्ट साइड में ओ एक आदमी सोया हुआ है।

और एक सामने से एक बुड्ढा आदमी आ रहा है।

यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

जिसमे एक आदमी बेठा है और माछ के माछ को देख रही है।

उ लोग का उपर वाला हिस्सा नही दिखाई दे रहा है।

और दुबला भी दिख रहा है।

आसमान में हल्का सा चाँद दिख रहा है।

जिसका सिर्फ हाथ दिख रहा है।

रास्ते के इस पार एक आदमी के हाथ में वाइट कलर के एक कुते हैं।

और रंग-बिरंगे लाइट्स लगे हुए है और बैलून्स भी है।